इस चित्र में एक भारतीय डाक दिख रहा है जो बोर्ड दिख रहा है आजादी का अमृत महोत्सव दिख रहा है |

देर लगी है रेलिंग लगी है घास दिख रही है हरियाली दिख रही है।